नमस्कार आप सभी लोगो को मेरा जैसा की आप लोग देख रही हैं दो मंजिले की इमारत है।

नमस्कार आप सभी लोगो को मेरा जैसा की आप लोग देख रहे हैं ये दो मंजिले की इमारत है जो की अभी पूरी तरीके से बनी नहीं हुई है।

कुछ फूलवारी बैठे हुए है फूल बेचने के लिए।